यह एक मकान बना हुआ है। जिसमे लोहे की खिड़की लगी हुई है और इसमे जीने --

इसमें ऑरेंज कलर का हल्का सा डिज़ाइन दे रक्खा है और पिंक कलर की दीवाल है जो सुन्दर बहुत है।

ऊपर आसपास किले और मंदिर से बन रहे हैं। बाहर बाइक पर आदमी बैठा हुआ है और औरत जा रही --

कुछ लड़के खड़े हुए हैं आस-पास पेड़-पौधे हैं पेड़-पौधों पर लाइट लगी हुईं हैं पीछे से बादल काला हो रहा है।

जैसे इमारत लग रही हो। आसमान नीला है और लाइटस भी लगी हैं। लोहे का खं --

कुर्सियां पड़ी है रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ है जिसमे आदमी बैठा हुआ काम कर रहा है।

यह एच.डी.एफ.सी. बैंक है एच.डी.एफ.सी. बैंक के बाहर दो ए.सी. लगे हुए हैं एक बड़ा सा लो --

यह केनरा बैंक है केनरा बैंक का मेन गेट लोहे के चैनल से बना हुआ है उसके आसपास खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

यह रोडवेज बस अड्डा लग रहा है। यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं। आदमी आ जा रहे हैं और उसके पास में पेड़ पौधे भी हैं। मकान भी बने हैं।

यह एक दुकान है। दुकान के बाहर टायर रखे हुए हैं। टायर के बा टायर रखे हुए हैं। इस --

छोटे-छोटे पेड़-पौधे रखे हैं पीले कलर के दो गुलदस्ते रखे हैं। एक गुला लाल कलर का गुलदस्ता रखा हुआ है। लाइट लगी हुई हैं।

यह एक जंगल है जिसमे नीचे तीन आदमी एक लड़की--